यहां पे हम एक गेट कंस्ट्रक्शन का काम देख रहे है एक गेट बना हुआ है।

यह एक कार एक्सीडेंट का फोटो नजर आ रहा है।

खाने पीने का सामान रखा गया है।